filezilla का परिचय के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे: filezilla के बारे में
filezilla की विशेषताएँ
filezilla को कैसे install करना है
filezilla interface
filezilla के उपयोग से फाइलों को upload एवं download करना
filezilla क्या है
यह एक free और open source software है
इसका उपयोग network पर फ़ाइलों और folders को शेयर करने के लिए किया जाता है
यह उपयोग में आसान है
सभी operating systems operating systems पर कार्य करता है
filezilla की विशेषताएँ
ftps ssh और ipv6 पर ftp ftp का समर्थन करता है
आसानी से फ़ाइल transfer के लिए drag and drop drag और drop का समर्थन करता है
फ़ाइलनेम filters की सुविधा है – उपयोगकर्ता उन विशिष्ट फ़ाइलों को filters कर सकते हैं जो उनकी शर्तों को पूरा करती हों
स्थानीय और दूरस्थ डॉयरेक्ट्रिज़ की तुलना के लिए directory comparison directory तुलना
bookmarks का समर्थन करता है
इस tutorial को record करने के लिए मैं ubuntu linux os वर्ज़न 1404 का उपयोग कर रही हूँ
filezilla वर्ज़न 3102
और एक working internet connection
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपको किसी भी एक operating system का कार्यसाधक ज्ञान working नॉलेज होना चाहिए
linux os के बारे में सीखने के लिए कृपया इस website पर linux spoken tutorials देखें
ubuntu linux os पर निम्न में से किसी भी एक विधि के उपयोग से filezilla को installed किया जा सकता है
ubuntu software centre या synaptic package manager पर जाएं filezilla की खोज करें और install करें
या terminal में sudo aptget install filezilla type करें और enter press करें
किसी भी os ऑपरेटिंग सिस्टम पर filezilla install करने का दूसरा तरीका है कि
उस विशेष os ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए filezilla client download करें
windows os पर downloaded किए हुए setup file पर doubleclick करें और install करें
मैंने पहले ही अपनी linux machine पर installation कर लिया है
filezilla खोलें
ubuntu linux में अपने desktop के top left corner में dash home पर click करें
search box में filezilla type करें
आप filezilla icon देख सकते हैं इसे खोलने के लिए इसपर click करें
windows में start menu पर click करें और filezilla खोजें
सूची में filezilla को खोलने के लिए इसपर click करें
वैकल्पिक रूप से यदि आपके desktop पर filezilla shortcut icon है तो केवल इसपर doubleclick करें
filezilla interface ऐसा ही दिखता है
इसमें शामिल हैंtop पर menu bar
shortcut icons bar आमतौर पर menu items के उपयोग के लिए
quick connect bar
details pane
local site pane
remote site pane
status pane
quick connect bar में निम्न के लिए fields हैं
hostजिसमें हम remote location ip या site address का host विवरण enter करते हैं
username – जहाँ हमें host का यूजरनेम देना है
password – host user के लिए password field
portसंचार के लिए protocol प्रकार
quick connect button – remote location से connect करने के लिए
a drop down – इसमें पहले से connected किए हुए locations की सूची होती है
details pane में remote machine पर connectivity तकनीकी विवरण और निष्पादित commands होते हैं
local site pane – यह हमारे system का फ़ाइल structure प्रदर्शित करता है
remote site pane connected किए हुए remote system का फ़ाइल structure प्रदर्शित करता है
ये दोनों फ़ाइलों और folders को browse करने और locate करने में हमारी मदद करेंगे
status pane file transfer status को प्रदर्शित करता है
इसमें 3 टैब हैं: queued files – उन फ़ाइलों की सूची दिखाता है जो transfer के लिए queued में हैं
failed transfer – उन फ़ाइलों की सूची दिखाता है जिनका transfer विफल रहा है
successful transfer – उन फ़ाइलों को दिखाता है जिनका transfer सफलतापूर्वक हो गया है
आगे हम देखेंगे कि एक remote system को कैसे connect करना है और किसी फ़ाइल को इसमें कैसे transfer करना है
host box में मैं remote machine s ip address type करूँगी
आप उस machine का ip address दे सकते हैं जिसे आपको access करना है
उसके बाद remote machine के लिए username & password enter करें
22 के रूप में port type करें
और quick connect पर click करें
आपको एक message संदेश मिलेगाunknown host key
checkbox पर click करें: always trust this host add this key to the cache और ok button पर click करें
details pane में एक success message आता है
यह पुष्टि करता है कि remote machine और आपकी machine network से connected हो गए हैं
अगर मशीनें connect नहीं होतीं तो connection failed message आता है
आइए अब अपनी machine से remote machine को एक फ़ाइल transfer करें
ऐसा करने के लिए सबसे पहले उस फ़ाइल को browse करें जिसे आप local site pane में transfer करना चाहते हैं
मैं अपने machine पर folder desktop पर जाऊँगी और sample pdf select करूँगी
फिर फ़ाइल पर rightclick करना है और upload select करना है
status pane में आप file transfer status देख सकते हैं
आपके network की गति के आधार पर इसमें कुछ समय लग सकता है
एक bar transfer पूर्ण हो जाने पर progress bar queued files टैब से लुप्त हो जाएगा
successful transfer टैब पर click करें यहाँ हमारी entry है
status pane प्रदर्शित करता है कि फ़ाइल ट्रांस्फर हो गई है
आइए देखते हैं कि किस location में फ़ाइल ट्रांस्फर हुई है
default रूप से files उस location में transfer होती हैं जो remote site pane में खुला रहता है
यहाँ हमारी फ़ाइल sample pdf है
यदि यह नहीं दिखती है तो shortcut icons bar में जाएँ और refresh button पर click करें
आगे हम सीखेंगे कि एक विशेष location में कैसे अपनी फ़ाइलों और folder को upload करना है
remote site pane में मैं folder desktop के लिए browse करूँगी
उसके बाद desktop folder में rightclick करना है और create directory को select करना है
एक window खुल जाती है
मैं directory का name spokentutorial रखूँगी और ok button पर click करूँगी
desktop पर आप देख सकते हैं कि spokentutorial folder on गया है
अब आइए इसमें कुछ फ़ाइल upload करें
मेरे desktop पर intro ogv नामक मेरी एक फ़ाइल है
हम इस फ़ाइल को upload करेंगे
फ़ाइल पर click करें इसे remote site pane में spokentutorial folder में drag और drop करें
हम drag और drop विधि से या rightक्लिक करने के बाद upload का चयन करते हुए फ़ाइलों और folders को upload कर सकते हैं
ध्यान देंintro ogv फ़ाइल spokentutorial folder में uploaded हो गई है
अब remote machine से एक फ़ाइल या folder को download करना सीखते हैं
ऐसा करने के लिए remote pane से फ़ाइल को local machine में drag और drop करें
वैकल्पिक रूप से rightclick करें और download select करें
अब spokentutorial नामक folder remote machine से हमारे local machine में downloaded हो गया है
इसी तरह आप अपने machine से किसी भी remote machine में आसानी से फ़ाइलों को upload या download कर सकते हैं
अब हम इस tutorial के समापन पर आ गए हैं संक्षिप्त विवरण let let हैं
इस tutorial में हमनेfilezilla के बारे में सीखा
filezilla की विशेषताओं के बारे में
filezilla को कैसे install करना है
filezilla interface
filezilla के उपयोग से फ़ाइलों को upload एवं download करना
link पर दिया गया video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
हम कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं तथा online tests pass करने वालों को प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें
इस spoken tutorial पर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया इस site पर जाएँ
उस minute और second का चयन करें जिसके संबंध में आप प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना प्रश्न संक्षेप में बताएँ
spoken tutorial team का कोई सदस्य आपके प्रश्नों का उत्तर देगा
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है
इस mission से संबंधित अधिक जानकारी इस link पर उपलब्ध है
यह script बिंदु पांडेय द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ देखने के लिए धन्यवाद